यूज़र रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल के तीसरे भाग में आपका स्वागत है इस भाग में हम उन सब की मौजूदगी की जाँच करने जा रहे हैं जिनकी हमने पिछले भाग में चर्चा की थी
जल्दी से संक्षेप में दोहराते हैं जो हमने पिछले भाग किया था
हमने अपने fullname और username के टैग्स स्ट्रिप किये थे
हमने अपने पासवर्ड को स्ट्रिप और एन्क्रिप्ट किया था
फंक्शन्स के इस क्रम को ध्यान रखिये जिससे कि हम अपने एन्क्रिप्टेड वैल्यू को स्ट्रिप ऑफ़ न करें
यहाँ हम अपनी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं मैं इन सबकी मौजूदगी की जाँच करूँगा
इससे पहले कि मैं यह करूँ मैं date निर्धारित करने जा रहा हूँ अब यह डेट फंक्शन इस्तेमाल कर रहा है
अंदर हमारे पास वर्ष के लिए y है महीने के लिए m है और दिनाँक के लिए d है
4 अंक के वर्ष के लिए यह बड़ा y है यदि हम छोटा y इस्तेमाल करते हैं हमारे पास 2 अंक का वर्ष होगा
अतः अभी मेरे डेटाबेस में मेरे पास पहले मेरा वर्ष है फिर मेरा महीना और मेरा दिन और यह हाईफन से अलगअलग हैं
यहाँ जब हम अपने डेटाबेस में जाते हैं आप यह देख सकते हैं और users में एक वैल्यू प्रविष्ट करें
हम देख सकते हैं कि दिनाँक उल्लिखित फ़ॉर्मेट में है यहाँ यदि हम इस तरह का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं
जब मैं आज का दिन क्लिक करता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें वर्ष एक 4अंक फॉर्मेट में मिला है और हमारा महीना यहाँ और हमारा दिन यहाँ हाईफंस से अलगअलग हैं
यह हमारे डेटाबेस के अंदर इस संरचना में समायोजित हो गया है
ठीक है अतः if submit फिर हमें मौजूदगी के जाँच की आवश्यकता है मैं यहाँ एक टिप्पणी जोडूँगा check for existence
अब यह वाकई में सरल है हमें बस यह करना है कि हमें if स्टेटमेंट लिखना है और इसके बाद कोड का एक ब्लॉक
कंडिशन होगी यदि fullname username password और repeat password मौजूद हैं हमारे पास यहाँ प्रमाण है हम लिखेंगे if username आगे and अतः डबल एम्परसेंड चिह्न
फिर हम लिखेंगे password और फिर हम कहेंगे
ओह! मैं यहाँ fullname भूल गया अतः मैं इसे यहाँ जोड़ दूँगा
इन्हें डबल एम्परसेंडचिह्न से अलग करें
अंतिम repeat password है अतः उसे टाइप करें
हमें इन सबकी आवश्यकता होगी
else हम लिखेंगे echo please fill in और मोटे अक्षरों में all fields
इसके बाद हम एक पैराग्राफ ब्रेक रखेंगे
साथ ही मैं फॉर्म के पहले भी एक पैराग्राफ ब्रेक रखता हूँ जिससे कि हमारी दी गयी प्रत्येक एरर सूचना में जोड़ने की आवश्यकता न पड़े
अतः इतना ही अभी इसे करने की कोशिश करते हैं
मैं मेरे रजिस्टर पेज में वापस जाऊँगा हमें वह यहाँ मिला register पर क्लिक करते हैं
please fill in all fields
कुछ फील्ड्स यहाँ टाइप करते हैं
अपने पासवर्ड्स में से एक चुनते हैं हम अपना पासवर्ड दोहराएँगे नहीं
रजिस्टर ओह! रिपीट पासवर्ड रिपीट पासवर्ड
इस समय इसके कार्य न करने का कारण है कि एक md5 वैल्यू कुछ नहीं टेक्स्ट के md5 स्ट्रिंग के बराबर है टेक्स्ट की एक एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग
अतः समझ गया हूँ कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है यहाँ से md5 फंक्शन हटाएँ
सुनिश्चित कर लें कि आपने अंत के कोष्टकों को हटाया मैं यहाँ नीचे आऊंगा और अपने पूर्ण डेटा को जाँचूंगा
अतः मैं वापस जाता हूँ और फिर से कोशिश करता हूँ
याद रखिये इसने पहले कार्य नहीं किया था जब हमने repeat password नहीं चुना था
अतः यदि मैं पासवर्ड या रिपीट पासवर्ड नहीं चुनता हूँ हमें हमारी एरर मिलती है
रिपीट पासवर्ड को छोड़कर यदि मैं फिर से वैल्यू चुनता हूँ हमें अभी भी यह एरर मिलती है
यह समस्या है हमें क्या कहना चाहिए कि यदि सब कुछ मौजूद है तब हम अपना पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड बदल सकते हैं
अतः मैं लिखूँगा password is equal to md5 of password
यह हमारी मूल वेरिएबल वैल्यू को एन्क्रिप्ट करेगा और उसी वेरिएबल में एक नया पासवर्ड कोड रखेगा
हमें repeat password equals md5 और repeat password भी लिखने की आवश्यकता है
यहाँ टिप्पणी करें encrypt password हमने अपने पासवर्ड को एन्क्रिप्ट कर लिया है
अब हम आगे जाएँगे और अपने डेटाबेस में सभी डेटा को जोड़ देंगे
मैं यह करने जा रहा हूँ क्योंकि हमें हमारा डेटा मिल गया है जो पंजीकरण के लिए जा रहा है हम प्रत्येक डेटा के लिए एक अधिकतम सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं जोकि इनपुट है
अब हम अपने फुलनेम यूज़रनेम पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड के लिए 25 अक्षर मानते हैं अतः अधिकतम वैल्यू 25 है
अतः मैं लिखूँगा यदि यूज़रनेम की स्ट्रिंग लम्बाई 25 से लम्बी या बड़ी है या फुलनेम की स्ट्रिंग लम्बाई 25 से बड़ी है
इन्हें अलगअलग करके देखते हैं और और लिखते हैं यदि आपके यूज़रनेम या फुलनेम की लम्बाई बहुत अधिक है
मैं इसे ठीक से रखता हूँ
यदि इनमें से प्रत्येक वैल्यू 25 से ज्यादा या 25 से बड़ी है
हम इन वैल्यूस को एको करेंगे username or no लिखकर
मैं लिखता हूँ max limit for username or fullname are 25 characters
अन्यथा मैं अपने पासवर्ड की लम्बाई को जाँचने के लिए आगे बढूँगा
अब मैंने यह करने का निश्चय किया है check password length क्योंकि मैं इसके लिए एक विशेष जाँच चाहता हूँ
मैं लिखता हूँ यदि मेरे पासवर्ड की स्ट्रिंग लम्बाई 25 से अधिक है या स्ट्रिंग लेंथ
नहींउम इससे छुटकारा पाते हैं else से छुटकारा पाते हैं
पहली जाँच मैं यह करना चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ यदि मेरे पासवर्ड्स मेल खाते हैं
मैं लिखता हूँ if password equals equals to repeat password तो कोड के बड़े ब्लॉक के साथ जारी रहें
अन्यथा यूज़र को एको करें your passwords do not match ठीक है
अतः आप यहाँ टाइप कर सकते हैं और हम अपने अक्षर की लम्बाई की जाँच जारी रख सकते हैं
अब username और fullname के अक्षर की लम्बाई को जाँचने के लिए अतः check char length of username and fullname
और यह होगा जो हमने पहले बोला था if username is greater than 25
बल्कि यदि इस फंक्शन में इस्तेमाल स्ट्रिंग लम्बाई 25 से बड़ी है
या फुलनेम की स्ट्रिंग लम्बाई 25 से अधिक है तो हम एको करते हैं length of username or fullname is too long!
अतः केवल इसे सरल रखने के लिए और दूसरे प्रकार से हम लिखेंगे check password length
यहाँ मैं उल्लिखित या लिखने जा रहा हूँ if अब अपने पासवर्ड्स समानता को याद करें
अतः हमें यह केवल एक पासवर्ड वेरिएबल में जाँचने की आवश्यकता है
यहाँ मैं लिखता हूँ यदि पासवर्ड की स्ट्रिंग लम्बाई 25 से ज़्यादा है या हमारे पासवर्ड की स्ट्रिंग लम्बाई 6 अक्षरों से कम है
तो हम एक एरर एको करेंगे जो कहता है password must be between 6 and 25 characters यह निश्चित ही कार्य करेगा
हम इस चर्चा को अपने अगले ट्यूटोरियल में जारी रखेंगे
इससे पहले मैं केवल इसे एक else स्टेटमेंट के साथ समाप्त करता हूँ
अतः अन्यथा हम लिखेंगे register the user यूज़र को पंजीकरण करने के लिए हमारा कोड यहाँ होगा
अगले ट्यूटोरियल में हम इसे जाँचेंगे और सीखेंगे कि यूज़र को पंजीकृत कैसे करें और हम अपना कोड यहाँ उस ट्यूटोरियल में रखेंगे
यह मूलतः हमारे पासवर्ड की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को जाँचने के लिए था और यहाँ कोड का यह ब्लॉक हमारे शानदार register the user कोड का भाग है
अतः मुझसे अगले भाग में जुड़िये मैं रवि कुमार आय आय टी बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद